और उसमे लिखा हुआ है महेश और बघेल जी केशकाल दण्डकारण्य शासकीय महाविद्यालय केशकाल जी कोंडागांव छतीसगढ़--

और अच्छा से सजाया गया है पंडाल उनको घर को पंडाल भी बहोत ही अच्छा बनाया है फूलों से सजाया गया--

और कोई इस अ मैंन गेट में चढ़ रया --.

यह एक डेंटिस हॉस्पिटल है जहाँ पर लिखा हुआ है एक बोर्ड पे डेंटल वह लाइब्रेरी नाईनटीन टवेंटी वन इन दा टाइम ऑफ़ राजा --

यह एक डैम है जो डैम के अ डैम के रास्ता से अ फोटो दिखाया गया है डैम का पानी बहोत ही ज्यादा गहरा है डैम के--